एल.इ.डी बल्ब दिख रहा है जो जल रहा हैं।

बस स्टैंड दिख रहा है बस स्टैंड में तीन बस दिख रही है।

टू इ रिक्शा दिख रहा है इ रिक्शा रेड और --

एक शोरूम दिख रहा है हायर का--

फ्रिज दिख रहा है हायर का प्रोडक्ट है।

कुछ छोटे पेड़ है कुछ बड़े पेड़ है ।

कांच लगा हुआ है बल्ब लगा हुआ हैं ट्युबलाइट जल रही है।

चार- पाँच हिरण है नीचे जमीन में घाँसे उगी है मिट्टी दिख रही है भूरी -भूरी --

तलाउ के अगल - बगल किनारे पेड़ दिख रहै है घर है।

दूर-दूर तक पहाड़ दिख रही है पहाड़ की चोंटिया दिख रही है ।

एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें पेंट है तीन मंज़िला बिल्डिंग है लोहे की रौड लगी हुई है ।

और तीन मंज़िला बिल्डिंग है बिल्डिंग में सफ़ेद कलर का पेंट है बिल्डिंग की खिड़कियाँ दिख रही है लोहे की खिड़कियाँ लगी हुई है ।

लम्बी -चौड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के आजु-बाजु पेड़ दिख रहे है हरी-हरी पत्तियाँ दिख रही है पीछे आसमान दिख रहा है नीला --